यहाँ एक गेट दिख रहा है लोहे का बना हुआ है उसके ऊपर एक हेलोजन लाइट लगी हुई है।

सामने कुछ पत्थर रखे हुए हैं बड़े-बड़े।

कुछ इंजेक्शंस रेंज डली हुई हैं दो आदमी खड़े हुए हैं और कुत्ता को कुछ कर रहे हैं| नीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं मास्क लगाए हैं ।

लोहे की स्टील रेलिंग लगी हुई है उस गेट पर कुछ पत्थर की खुदाई है मूर्ति बनी हुई है अंदर झंडे लगे हुए दिख रहे है कुछ पेड़ दिख रहे --

एक बाल्टी दिख रही है एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है पीछे एक मकान दिख रहा है।

कढ़ाई दिख रही है काली उसके ऊपर रखी हैं।